रोजाना वह अपने कार से संबंध सामग्रियां लेकर जाते हैं।

वहीं सामने की ओर एक स्टेज बना है जिस पर दूल्हा-दुल्हन के लिए एक कुर्सी रखी गई है जिन पर वो बैठेंगे --

यह से अनेक लोग नास्ता व खाना पीना खाते हैं। इस रेस्तुरांत की दीवालों पर चित्र कारी की गई है।

यहाँ पर गाय का दूध भी निकाला जाता है। यहाँ से कई लोग दूध बा गोबर लेने के लिए आते हैं।